तथा एक बनाने नक्सा बनाने वाला आदमी खड़ा हुआ है एक व्यक्ति रेड कलर की --

मुझे यहाँ पर एक झिक जिम दिखाई दे रही है जिसमें एक आदमी जिम करता हुआ --

दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लैक कलर के स्लेटी कलर का --

और पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है पत्तरों के बाजु मे कुछ--